रिक्शा वाला है ऑटो वाला है यहां पे कुछ आदमी ऑटो के पास खड़ा है उधर कुछ पैसेंजर लड़के लोग ऑटो पे चढ़ रहे --

बच्चों का खिलौना सामान है अपोजिट अट्टा है उधर डोर है टाइल्स है वुड कलर पेंट है।

यहां पे कुछ दुकान है दुकान में बहुत सारा शॉपिंग का माल है ड्रेस है।

ये एग्जीमिशन के जिस्सा है गेम्स है फुटबॉल है।

एक गाड़ी में एक आदमी देखकर जा रहा है उधर पे एक कलहारी खड़ा है इधर पे भी कुछ पे कार खड़ा है गाड़ी खड़ा है सब कुछ खड़ा है।

झाड़ा झाड़ कुछ आदमी लोग बैठे हैं एकदम बढ़िया है।

सेफ्टी है कुछ उसके आस पास में थैला है खम्बी है।

के ऊपर अनानास है आस पास में आदमी लोग खा रहे आस पास में फ्रूट का दुकान भी है।